अंधेरे में लाइट जल रही है यहाँ कुर्सियां भी लगी हुई है जो पीली --

कॉलेज है और यहाँ पुतले बने हुए हैं पुतले को माला पहनाए हुए हैं और पुतले नहीं यानी हम उनको प्रतिभा बोल सकते हैं प्रति --